और काफी सारी घास उगी हुई है।

और इसके बाहर लिखा हुआ है आर_एफ रेस्टोरेंट एंड --

और बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हुए हैं।

और नीले और सफेद कलर की गुब्बारे लगे हैं।

काफी सारे लोग भी यहां पर आए हुए हैं।

मैं देख पा रही हूं कि सामने बहोत बड़ा आईना लगा हुआ है और नीचे फर्श पर टाइल्स लगा हुआ है काले और सफेद कलर में--

नीचे फर्श पे टाइल्स लगा हुआ है।

काफी सारी लाइटें भी यहां पर लगी हुई हैं।

काफी बड़े बड़े पत्थर रखे हुए यहां पर--

में देख पा रही हु की यहाँ पर काफी सारे लोग है स्टूडेंट्स है।

मैं देख पा रही हूं कि एक बहुत बड़ा हॉल है यहां पर टाइल्स लगा हुआ है सफेद कलर का।

और यहां पर पंखे भी लगे हुए है।

काफी हरियाली है यहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

पंखे भी यहां पर लगे हुए हैं लोग भी यहां पर आ जा रहे हैं।

हॉल है जिसके बाहर लोग आए हुए बहोत सारे--

मैं देख पा रही हूं ये रोड है जहां पर गाड़ियां चल रही है।

जहाँ पर चेयर रखे हुए है टेबल रखा हुआ है।

मैं देख पा रही हूं ये घर है कमरा है जहां पर काफी सारी कुर्तियां रखी हुई है।

और नीचे चादर भी बिछा हुआ है।

मैं देख पा रही हूं कि एक रेस्टोरेंट है जहां पर टेबल लगा हुआ है और काफी सारी खुर्सियां भी लगी हुई है।

मैं देख पा रही हूं यहां पर काले अंगूर रखे हुए हैं बहोत सारे --

और इसके बाहर लिखा हुआ है नव पार ज्वैलर्स --